यह चित्र एक हॉस्पिटल रूम का है जिसमें दो बेड रखे हुए हैं।

और एक कच्ची सड़क है और टीन लगी हुई है और घास फूस भी है।

पक्की सड़क और पैदल चलने के लिए फुटपाथ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में सामने एचीवर्ष कोचिंग इंस्टिट्यूट का बोर्ड लगा हुआ है।

और सामने एक एल_सी_डी लगी हुई है लाइटें और बोर्ड भी लगे हुई है।

बाइक और डस्टबिन लाइट और चिप्स वगैरा भी है।

हॉस्पिटल में एक टेबल भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

जिसने बाइक के सभी पार्ट्स रखे हुए हैं दुकान के ऊपर एक बैनर भी लगा हुआ है।

कुछ लोहे के खंभे और कुछ सीमेंट के खंभे हैं।

और बोर्ड भी लगा हुआ है और नीचे एक पॉलिथीन पड़ी हुई है।

इस चित्र में दो छोटी लड़की और एक लड़का पेंटिंग बनाते दिखाई दे रहे हैं।

और प्लास्टिक के पाइप भी हैं।

और खिड़की पर पर्दे लगे हुए हैं।

बाइक इस्कूटी और साइकिल भी खड़ी हुई है।

जमेट्री बॉक्स इजर रबड़ कटर पेंसिल पानी की बोतल और बच्चों के बैग भी है।

लोहे के सरिये और प्लास्टिक के पाइप भी है।